ये जो की ऊपर की और देख रही है इसके पीछे वाईट कलर की चेयर रखी हुई है और पीछे की तरफ इसका बैकग्राउंड ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। और ये रेड कड़की करपेट पे (पर) बेठी हुई है।

सट्रिफिकेट लिए हुए हैं इनके पीछे कुछ अन्य बड़े बुजुर्ग लोग खड़े हुए हैं जिनमे दो रेड कलर के कपड़े पहने और दो वाईट कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

और एक लिप्टिन दुकान नजर आ रही हे लिप्टिन दुकान के बाहर एक बाइक खड़ी हुई हे किराना दुकान के बाहर दो बाइसिकल खड़ी हुई है और एक बाइक अंदर खड़ी हुई है।

इस इमेज में एक घर नजर आ रहा है जो पिंक कलर में दिखाय दे रहा है ऊपर चर्च का लोगो लगा हुवा है और अंदर वाईट कलर की लाईट जल रही है।

और गोगल लगाया हुआ है ब्लैक कलर का जोकि निचे की तरफ त चट्टानों की ओर देख रहा है और जो ब्लैक कलर का कैफ्री पेहना हुआ है।

इस इमेज में एक फ़ूड की शॉप नजर आ रही है जहां पर कुछ केले रखे हुए हैं और सामने की तरफ कुछ एपल रखे हुए हैं।

ए ग डा लाइट ग्रीन कलर की कैप पहना हुआ है। वाइट कलर का टी-शर्ट पहना है। ब्लू कलर की जींस पहना हुआ है और ब्लैक कलर का स्लीपर पहना हुआ है और इसी के ऊपर कुछ बलून दीवाल में लगाये गए हैं।